ये दृश्य एक मंदिर का है | जहाँ पर नीचे कटे के अंदर और जमीन पर कपड़ा बीछा कर सब्जियाँ रखी गई हैं।

सामने एक सफेद रंग की बिल्डिंग है जो कि बहुत सुंदर नज़र आ रही है।

काले रंग की मोटर साईकिल है और एक व्यक्ति सामने की तरफ मुँह करके इधर देख रहा है।